और कुछ बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

टेबल के ऊपर दफ्तर खान बिछा हुआ है जो व्हाइट कलर का--

डोर के ऊपर भी वाइट बना हुआ है उसकी फ्रेम लगे हैं ब्राउन कलर के।

यहां पर काफी छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं एक बड़ा नारियल का पेड़ लगा हुआ है।

कुछ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और पीछे एक टावर लगा हुआ है यह दोपहर का मौसम है।

एक खंभा जा रहा है उस खंभे के ऊपर काफी सारे नुकीले डंडे निकले हुए हैं नीचे कि ओर लाइटें जल रही हैं और इसके अंदर से पानी आ रहा है।

यहां पर काफी सारी हरी भरी घास दिख रही है।

और पीछे कुछ बैठने के लिए जगह बनी हुई है।

और फ्लावर कोड अलग अलग कलर के हैं जिनके बहुत डिजाइने बनी हुई है।

लेफ्ट साइड में और फू पू फूल रखे हैं राइट साइड में।

ऊपर भी बहोत सारी मूर्तियां बनी हुई हैं।